साइड से बहोत सारे बच्चे के साथ तस्वीरें हैं जो की झाड़ू लगा रहें हैं उसके ऊपर रेड कलर के अक्षरों में शौचालय लिखा हुआ है सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे सार्वनिक शौचालय लिखा हुआ है और साइड से --

सामने एक स्टोर है जिसके ऊपर बेनर लगा हुआ है जिसपे एयरटेल लिखा हुआ है नीचे टेबल डली हुई है।